--यहां मेटल स्टंपड मेटल को कास्टिंग किया जाता है स्टेनलेस स्टिल मेटल एकदम गोल्डन कलर के सिल्वर कलर में एकदम --

इसके ब बीच में एस_बी_आई कार्ड का आई थिंक यह क्रेडिट कार्ड या कोर्ट कार्ड का ऑप्शन है।

यह एक शॉप है सैनिटाइजर रखे हुए है पिंक कलर की एक ब्लू कलर एक वाइट कलर की सैनिटाइजर

यह एक सोफा सेट फर्नीचर की दुकान है जिसपे एक फर्नीचर सेट रखा हुआ है फाइव पीपल के लिए--

रॉयल एनफील्ड की शोरूम है जहाँ पे फॉर रॉयल एनफील्ड बाइक रखी हुई है विथ डिस्क ब्रेक जिसमें एक बालू है रेड है ब्लैक है और एक रेड है यह सब ओल्ड स्टाइल की पे है।